इस फोटो में मुझे कुछ लोग योगा करते नजर आ रहे हैं।

यह तस्वीर या फोटो किसी दुकान या ज्वेलरी शॉप की फोटो लग रही है।

बोला जा सकता है जिसमें देखा जा सकता है की--

जैसा की मैं इस तस्वीर में देख सकता हूं की यह फोटो --

की इस फोटो में अ कोई शोरूम या सर्विस सेंटर का फोटो लग रहा है जिसमें--

जैसा कि मैं इस फोटो में देख पा रहा हूँ।

कान की यरिंग्स झुमकिया वगैरह।

जिसमें अअ काफी अच्छा लग रहा--

अपने अं हाथों को फैला रही है।

काफी लुकिंग दिख रहा है इसके नीचे पाकिंग में एक कार भी खड़ी गई है।

इस फोटो में मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ इस इमेज में मुझे एक--

अ हरियाली काफी अच्छी की गई है ग्राउंड में काफी अच्छा लग रहा है।

इस फोटो मैं मुझे आह कुछ आ डेस्क नजर आ रहे हैं किसी होटल या रेस्टोरेंट का फोटो है।

जो कि देख पा रहा हूं इसमें दूसरी गाय भी उसके बाजू में दिख रही है।

इस इमेज में मुझे हरे काफी सारे--

कुछ घूमने लायक जगह दिख रही है।

आगे खेत ग्राउंड बहुत सारी चीजें नज़र आ रही है पॉली हाउस भी दिख रहा है।

जिसमें काफी सारे पेड़ पौधे भी दिख रहे हैं।

कुछ नजर आ रही हैं सब्जी मंडी की दुकानें जिसमें बोरे झोले एवं कट्टों--

अतर या सेंट परफ्यूम वगैरह की है।

जिसमें कि मुझे नजर आ रहा है।

जिसका नाम है कृष्णा पिक्चर प्राइवेट लिमिटेड ।

इसमें गाड़ी पेट्रोल भरवाती हुई नज़र आ रही है।

अ ये रोड भोपाल का लग रहा है जिसमें हॉस्पिटिल है भोपाल सिटी हॉस्पिटल डबल लाइन रोड है।

पब्लिक को देखकर के अच्छा लग रहा है।

जिसमें अ पौधे के जरिए एक अ चौकोर--